हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं दूसरे तरफ गुलाबी रंग की पटरी दिख रही है ।

एक पूल बना है जो भूरे रंग का तथा काले रंग का है| यहाँ पर बादल साफ नहीं दिख रहे।

और एक की है प्लेट के नीचे एक क्रेट रखी है क्रेट का रंग नीला है यहाँ पर लीची बहुत सारी मात्रा में है जो कि बहुत सुन्दर और रसीली दिख रहीं हैं |

थोड़े डूबता हुआ दिख रहा है सूरज यहाँ पे सड़क का रंग काला है छज्जे दिख रहे है छज्जों में रेलिंग लगी है जिसका रंग भूरा है।

जैसा कि मैं देख पा रहीं हूँ यहाँ पर मुझे एक बहुत ऊंची इमारत दिख रही है जिसका रंग काला है यहाँ पर एसी भी लगा है कार खड़ी है कार सफेद और --

जो कि बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार के है जमीन का रंग भूरा है साइड में एक बैनर लगा है जिस पर पेट्रोल डीज़ल लिखा है पेट्रोल पंप बहुत ही बड़ा है।

जैसा कि मैं देख पा रहीं हूँ मुझे यहाँ पर ट्रेन की पटरियां दिख रहीं है ये ट्रेन की पटरियां बहुत दूर तक दिखाई दे रहीं है यहाँ पर दो --

जैसा की मैं देख पा रहीं हूँ मुझे यहाँ पर बीच में एक मंदिर दिख रहा है जिसका रंग स्लेटी है ये एक गोलाकार जगह पे है यहाँ पर खूब सारी हरी-हरी घाँस हैं।

यहाँ पर एक टिन का एक सेड भी है जो काले रंग का है इस पर पंखे लगे है जो सफ़ेद रंग के है यहाँ पर दो व्यक्ति दिख रहे हैं।

जिन्होंने एक में सफेद एक तथा एक ने सफेद और हरे कलर की शर्ट पहनी है दीवाल का रंग सफेद--